लगी हुई है।

नदी हैं नदी के किनारे पहाड़ हैं बहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

नदी के किनारे सीढ़ियां बनी हुई है पुराना सा मंदिर है।

''रंग बिरंगी दृश्य है'''' सामने पेड़ पौधे है ।''

मंच सजा हुआ हैं कुछ लोग हैं।